एक हेलीकॉप्टर खड़ा है जोकि ब्लू वाइट कलर है हेलीकॉप्टर के समाने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है जिसके ऊपर वाइट और ख़ाकी कलर का पुता है।

ऑरेंज कलर का कपड़ा दिख रहा है ब्लैक कलर की प्रतीमा दिख रही है आइट साइड खिड़कीया दिख रही है जिससे रूम के अंदर रोशनी आ रही है निचे की साइड टाइल्स लगी हुए है और छोटी वाली चटाइ बिची हुए है।

तालाब दिख रहा है तालाब के साइड मे हरियाली दिख रही है हल्की-हल्की नाव के जस्ट बाजू मे एक बड़ा-सा झाड़ दिख रहा है।

एक रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही हैजिसमे कुछ खिड़कियाँ खुली हुई है और वाइट कलर का दरवाजा है उसमे--

एक कांच दिख रही है कांच के बहार छोटी सी नदी दिख रही है मिट्टी दिख रही है और बहुत सारे झाड़ पेड़ पौधे दिख रहे है।

एक शाम की पिक्चर है जिसमे कुछ बच्चे नदी में नहा रहे है नदी दिख रही है।

दिवाल टाइल्स लगी हुई है दीवाल के बाजु में एक बाल्टी रखी हुई है और उसके साईड मे एक थरमोस का डब्बा रखा हुआ है एक स्टूल रखा हुआ है स्टूल के बाजू मे एक लोहे की बाल्टी रखी हुई है और साइड प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है।

और बिजली के खंबे दिख रहे हैं।

यह एक हॉल दिख रहा है जहां पर पंखा देख रहे है लाइट दिख रहे है खिड़की दिख रही है दरवाजा दिख रहा है जो कि खुला हुआ है और जहां पर बहुत सारे लोग है जिसमें से कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे है यह--